बहुत ही अच्छे जगह है यहाँ घूमने के लिए या बहुत ही प्रसिद यहाँ जगह है नजारा भी यहां मस्त है इस जगह का--

बहुत ही नामी है ये जामतारा का रेलवे स्टेशन दूर-दूर से लोग आते है सफर करने के लिए ।

यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से फूल लगाए गए हैं यहाँ लाइट लगाए गए हैं बहुत अच्छे लगते हैं देखने में यहाँ दूल्हा दुल्हन आके बैठते है यहाँ सब कोई आके फोटो खींचते है बहुत ही सुन्दर--

इसमें मकई होते है तो खाते है सभी।

यह पत्थर इलाका का बना हुआ है यहां जगह बहुत ही नामी जगह है ये बहुत ही सुन्दर सुन्दर यहाँ पत्थर है यहाँ सबकोई फोटो खिचवाने के लिए आते है दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते है शाम के समय यहाँ का नजारा यहाँ का बहुत ही सुन्दर होते है बहुत अच्छे लगते है यहाँ घूमने में।